इसमें हमें एक जगह दिखाई गई है जहां बड़े बड़े माउंटेंस हैं।

बहुत क्यूट सा लग रहा है यह बकरी का बच्चा।

ई फील्ड में शायद खेला कूदा जाता है दौड़ा भागा जाता है।

गाड़ीया चल रही हैं। पुलिस की गाड़ी आ रही है सामने से।

इस के वो खड़ी हुई है। नई-नई लग रही है मिनी मेट्रो । ये मिनी मेट्रो नई चली हुई है। ये बैटरी से चलती है बैटरी और बिजला से चार्ज होती है।

पेड़ों कि कटिंग बहोत बढ़िया से की गई है।